बगीचे में एक सीट पड़ी हुई है जिसपे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

रंग बिरंगे झालरो से सजावट की गई है।

बच्चे अपने अपने चार्ट लिए हुए हैं जिसमें वह कुछ न कुछ बना रहे हैं।

इस पिक्चर में बहुत से ऐतिहासिक लोगों के बैनर लगे हुए हैं।

घर के पीछे की ओर बहोत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक आदमी ने गले में चर्च का लॉकेट पहन रखा है।

इस पिक्चर में एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है।

पीछे की दीवाल में गैलेक्सी लिखा हुआ है जिसका जी रेड और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है।

अंदर कुछ लोग बाइक के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दस्तरख्वान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दस्तरख्वान का लोगो भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं।

आस पास कुछ बर्ड्स और बैनर लगे हुए दिख रहे हैं।

टेबल और कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर एक जिम की नजर आ रही है जिसमें वाकिंग मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक घर दिखाई दे रहा है जो की ऑरेंज कलर का है।

बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक आदमी उस मशीन पर वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है।

आसपास बहोत से मिरर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

रेड कलर से हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे चार जगह चर्च का साइन दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर बलून से सजावट की गई है जो कि तिरंगा कलर में है ग्रीन वाइट और ऑरेंज कलर में है।

कुर्सियों पर बहोत से आदमी और औरतें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।